हॉल में बहुत सारी लाइट और पंखे भी लगाये गए है हॉल की दिवार लोहे से बनी हुई है।

इनका ये कार के आस-पास बहोत सारे पेड़ और झंडे भी लगे हुए हैं।

इस गार्डन में एक फुवारा भी बना हुआ है यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं बैठने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी घाँस भी लगी हुई है यह पिक दिन की है।

इस पिक्चर में हमें एक मेला दिख रहा है। यह तस्वीर दिन की है। मेले में बहोत सारे झूले लगाए गए हैं।

मस्जिद के आस-पास बहुत सारे घर भी बने हुए हैं सामने एक खुला मैदान भी है जहाँ पर छोटी-छोटी घांस भी पड़ी हुई है|

बिल्डिंग के आस-पास बहुत सारा गार्डन भी बनाया गया हैं बिल्डिंग के आस-पास हर रंग के झंडे भी लगाए गए हैं जैसे कि नीला हरा पीला लाल ऑरेंज पिंक आसमानी जैसे --